ये एक अम्म टेबल टेनिस का जहाँ पे सोलो फलेनते है वो है और यहाँ --

ये मुझे किसी मेट्रो का घूम लग रहा है।

एक हेलमेट फेंका हुआ है एक आदमी फोटो अपनी खिचा रहा है रोड पकड़ के और एक अ बगीचा है यहां पे--

यह एक मुझे एक टैटू का स्टोर लग रहा है यहा पे टैटू की मशीने रखी हुई --

लोगो भी मुझे दिख रहा है तिरशूल बना हुआ है और भोलेनाथ का वो लग रहा है ।

बाकी तो मुझे शोरत साफ सफाई में तो एक नंबर लग रा है मुझे चलो --

यहा पे पीछे दोतीन टावर भी हैं बिल्डिंग्स भी हैं लेकिन अच्छा लग रा है मुझे अभी क्या करें ।

और वहां के सामने तो मेरे को पूरा का पूरा एकदम बिल्डिंग के व्यूज दिख रहे हैं काफी सारे बिल्डिंग्स टावर्स है।

और यहाँ पे बाजू में भी कोई और भी पेड़ है लेकिन पूरा बगीचा है यहाँ पे आम वाम भी है शायद ये बगीचे में --

बाकी पीपल के पेड़ भी है मुझे यहां पे सीसम के पेड़ भी दिख रहे हैं और बहोत सारे पेड़ है यहां पे--

वहां से क्लीन दिख रहा है अच्छा लग रहा है मुझे ये फोटो देख के।